इस इमेज में यहां पर देखिएगा मकान बनने का काम चल रहा है और कुछ लोग यहां पर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने एक किला नजर आ रहा है और नीचे देखिएगा बहुत सारे शो प्लांट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक सड़क के पास में कुछ लोग नजर आ रहे हैं और आलू प्याज के बोरे भी दिखाई दे रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर देखिएगा दो तीन कार खड़ी दिखाई दे रही है और सामने हरा कपड़ा भी बांधा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर एक फ्रूट की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर कहीं सारे फल नजर आ रहे हैं।

यहां पर देखिएगा इस इमेज मे एक कमरा दिखाई दे रहा है और टेबल और कुर्सी भी नज़र आ रहे है।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

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर मकान बनने का काम चल रहा है और सामने रेती का बड़ा सा ढेर भी दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक गली दिखाई दे रही है और सामने एक व्यक्ति लाल कलर के शर्ट पहने खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और लिखा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक मैदान दिखाई दे रहा है और ढेर सारे बगुले नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक नदी दिखाई दे रही है और आसपास कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक बैंक दिखाई दे रहा है और बाहर कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और कुछ लोग कुर्सियां पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने बड़े सा हाॅल दिखाई दे रहा है और सामने दो दरवाजे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक स्कूल दिखाई दे रही है और स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर भी --

इस इमेज में देखिएगा सामने सब्जी की दुकान दिखाई दे रही है और काफी सारी सब्जियां भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने बस खड़ी दिखाई दे रही है और एक ऑटो रिक्शा भी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक डाकघर दिखाई दे रहा है और सामने ये व्यक्ति झाड़ू मारता नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर जिम दिखाई दे रहा है और कुछ लोग एक्सरसाइज करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने एक स्टेज दिखाई दे रहा है और यहां पर दो व्यक्ति गाना गाते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक फाउंटेन दिखाई दे रहा है और पानी का फुव्वारा चलता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखियेगा यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा है और ऊपर शिव मंदिर लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर नदी दिखाई दे रही है और दो मछलियां तैरती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर साइकल पर आइसक्रीम की दुकान दिखाई दे रही है और एक व्यक्ति भी खड़ा नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहाँ पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और कुछ लोग कुर्सी पर बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। --

इस इमेज मे देखियेगा सामने एक दुकान दिखाई दे रही है केकस एंड कुकीस की और लाइटों से सजी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर कुछ घर बने दिखाई दे रहे है और बाहर सफेद रंग की कार भी खड़ी नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर एक स्टेज दिखाई दे रहा है और सामने कुछ लोग बैठे हुए नजर आ रहे है।

इस इमेज में देखीएगा सामने मंदिर दिखाई दे रहा है और यह व्यक्ति पूजा करता हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पर दुकान दिखाई दे रही है और ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में हनुमान आयुर्वेद लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में दिखेगा यहां पर सामने बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और नीचे बैंक भी नजर आ रहा है।